गाड़ी खड़ी हुई हैं गइयाँ गोबर गोवर कर रही हैं एक लड़की है उस स्कूटी चला रही है व्हाइट कलर की और --

इधर रेस्टोरेंट है खा रहे हैं बर्गर पिज़्ज़ा सब कुछ खा रहे हैं बहुत ही अच्छे-अच्छे और क्या पता बोर्ड सा कुछ लगा हुआ है।

हां हां दो लड़के बैठे हैं बहुत सारी भीड़ बैठी हुई। डीजे भी रखी है। हरी-हरी घास भी लगी है। स्टेज भी बनी हुई है। सफेद कलर का कलर पुता --